आजू बाजू में बहुत सारे बाइक्स है टेम्पो छोटा सा ही है साइज़ में मशीन भी --

यह एक शूटिंग के लिए रखा गया हॉल का दृश्य है--

ताकि कोई अ फोटोशूट कर सके ए_सी फैन वगैरह भी दिख रहे हैं ।

यह दृश्य में एक मंदिर दिख रहा है।

कलर किया हुआ है बिल्डिंग को अच्छा हो अच्छा वाला--

एक छोटा सा दूध मुझे घर जैसा दिख रहा है बड़ा सा तालाब है पानी भरा हुआ है।